पाइप का टीन टाइप का झोपड़ी बना हुआ है। उसके ऊपर टीन रखी हुयी है। बगल में एक पीपल का एक पेड़ है।

एक पोपलेन मशीन है जो खड्डा खोद रही हैं।

यह एक कम्पनी बनी हुई है जिसकी टीन पूरी नीले कलर की है।

एक छोटा डांस फार्मा रखा है। एक बड़ा डांस फार्मा रखा है। उस --

बाजार हैं जिसमे लोग मछलियाँ बेच रहे हैं।

एक आई यु टी सेंटर हैं जिसके बाहर फोर व्हीलर ब्लैक कलर की खडी हुई है।

वहा पे एक मिस्त्री गड्ढे की नाप ले रहा है। उसके पीछे वाइट कलर की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं।